स्टेज सजा हुआ है बहोत सारे टेंट लगे हुए हैं लाइट भी लगी हुई है यह एक गार्डन है।

यह दृश्य थोड़ा गार्डन जैसा लग रहा है।

और उसकी बाउंड्री नीली नीली दिखाई दे रही है।

जिसमें जिसमें एक कुर्सी रखी हुई है।

जल से भरा हुआ जलाते दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है और दो खंबे भी ब्लैक कलर के लगे हुए हैं।

और बाजू में सीढ़ियां गई हुई हैं सीढ़ियां काले कलर की हैं और पंखा भी लगा हुआ है और बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है।

रखी हुई है। टेबल भी है। टेबल पर--